पहाड़ भी हो आरु उधर न काला बाल --

ट्रॉली हव लाइट ह टाइल्स सब पानी लगल ह बचत सेव लिखल ह सामान सब ह बेचे वाला तेल ह आचार --

जंगल हव छत हव ढेरी जंगल सब है ए गो झंडा ह अम बांस हव।

और वो सूरज भी है साइड में।

कार ठीक करले हो ऊके ठीक करके चक्का हो चप्पल पहन ले हो बहुत लोग जूता पहन ले हो शीशा हो।